ये कोई प्रोग्राम चल रहा है जहां पे कुछ सामान बटने वाला है।

ये कोई स्कूल का प्रोग्राम है। यहाँ पे एक टेबल के ऊपर कुछ कपड़े वगेरा रखे हुए हैं कुछ कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं और काफी सारे बच्चे भी खड़े और बैठे हुए हैं।

ये कोई गमला है उसके किनारे में पत्थर की टाइल लगी हुई हैं और अंदर के साइड इसमे पानी भी नजर आ रहा है।

ये कोई पीछे की साइड होटल नजर आ रहा है उसके सामने एक रिक्शा खड़ा है इधर की साइड एक मोटर साइकिल है। तीन लेडीज इधर को आ रही हैं।

और एक बंदा पैदल चल के जा रहा है इसके सामने कुछ रिक्शा वाले खड़े हुए हैं कुछ जा रहे हैं कुछ अपनी सवारियों का इंतजार कर रहे हैं और एक अपना तिंरगा झंडा भी है।

कुछ बच्चे हाथ से अपनी कलाकारी से कोई फूल बना रहे हैं जमीन पर।

और सामने की साइड एक गेट है दो नीचे बाल्टी-सी कुछ रखा हुआ है।

में लगा पड़ा है पीछे की साइड से टीन नजर आ रही है।

ये कोई मेले का दृश्य है जहाँ पे आसमान में झूले लगे हुए हैं तीन नज़र आ रहे हैं और उसमें ऐसा कुछ लाइट के तार भी नज़र आ रहे हैं।

और लाइट के खंबे नज़र आ रहे हैं| और कुछ लोग आ रहे हैं इधर को और कुछ लोग उधर को जा रहे हैं| यहाँ पर रोड भी है बगल में।

इसमें एक आदमी है जोकि कोई स्टेज पर खड़ा है।

इसमें कोई तीन लड़के हैं जो कि फौजी की ड्रेस पहना दी गई है और एक बीच में लड़की खड़ी है।